इस चित्र में हमें यह दिख रहा है कि एक लड़का काले कुर्ते में --

इस चित्र में एस.बी.आई. बैंक का चिह्न दिखाई दे रहा है एस_बी_आई बैंक जो लोगों की लोगों को मुद्रा प्रदान करता है और लोग अपनी मुद्रा वहाँ जमा करते है और वहाँ उनकी मुद्रा सुरक्षित रहती--

दृश्य में हमें एक बहोत बड़ा सा स्कूल और एक बहोत बड़ा सा प्लेग्राउड दिखाई दे रहा है और प्लेग्राउंड के कोने पे एक बास्केटबॉल का एक गोल सा दिखाई दे रहा है।